स्कूल है पेड़ लगे हुए हैं बाहर बॉउंड्री है।

शॉप है वहाँ पे ढेर सारे रैक रखे हुए है सामान जमे हुए है।

लाइट लगी हुई है कूलर लगी हुई है टाइल्स है।

लोहे की चैन है आइट साइड में जाने की रास्ता है।

इधर साइड में पड़े हुए हैं दो-तीन लोग हैं।

एक दुकान है इसके ऊपर हमें शेयर कोचिंग सेंटर का बो --

मॉल है वहाँ पे एक सड़क हैं।